एक पुराना खंडर है काफी बड़े-बड़े पेड़ है।

एक दुकान है शटर की आम के पत्तों की माला लगी है एक मोटरसाइकिल है।

हेलमेट है और रोहित लिखा हुआ है।

सामने एवंस लिखा हुआ है मोटरसाइकिल है हैं।

फूलों की डेकोरेशन हो रखी है दो हाथी हैं गेट पे और एक लड़की है जिसने पर्स टांगा हुआ है।

काफी सारी टेबल हैं कुर्सियां है लाइट है फ्रिज है फ्रिज में--

एक बड़ी सी टेबल है जेंट्स है।

टेबल पर जग है प्लेट है गिलास है।

एक बसा टेबल है कुछ फाइलें पड़ी हुई है जेंट्स है जेंट्स कुर्सी प बैठा हुआ है कंप्यूटर चला रहा है माउस है।

माने की टंकी है स्टोर है एक जेंट्स लड़के के बाल कटिंग कर रहा है।

खाली मैदान है घास है कुछ पेड़ लगे हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है।

जय नागिनी माता लिखा हुआ है लोहे का गेट है गेट पे ताला लगा हुआ है कृपया दान में ही डाले बिजली का बोर्ड है चार्जर है ।

तीन सोफे हैं टप है कुर्सी है बाल्टी है।

काफी बड़े-बड़े पेड़ हैं और सीढ़ियां हैं लंबी-लंबी--